यहा पर हमें एक सारी भीड़ नजर आ रही है एक ट्रैक्टर भी है और ट्राली भी है साथ में --

और यहाँ पर तेजा बुक स्टॉल है जो कहीं पर खोला गया है और इसकी बगल में एक सेंटर है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक इंसान है एक लड़की है।